और उस भवन के बगल से एक बड़ी सी सड़क गुजर रही है।

वो काले कलर की है और उसके ऊपर में हरे कलर की लाइट लगी हुई है।

सफेद कलर की भवन को दिखाया गया है जोकि बहुत बड़ी है।

और रेस्टोरेंट के अंदर में बैठने के लिए टेबुल और कुर्सियां लगाकर रखी हुई है।

और यहां पर एक आदमी को दिखाया गया है जो कि हल्के ब्लू रंग और नीचे में काले रंग की टी शर्ट पहना हुआ है।

जो कि मैन्यू का छत का कलर हल्के सफेद रंग से--

और यहां पर बैठने के लिए बहोत सारी टेबल और चेयर लगाई गई है।

और उसके बाहर साइड में एक पेड़ लगा हुआ है।